हमें एक स्टेज नजर आ रहा है।

तीन बाइक्स भी नजर आ रहीं है।

इस बोर्ड के ऊपर हमें बाइक --

घर के अंदर हमें दो चेयर्स भी दिखाई दे--

हमें तीन कुएथीन नज़र आ रहे हैं।

योगा करती हुईं नजर आ रही हैं।

सभी बच्चे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं इनकी टीचर यहां पर--

कलर की फ्लावर्स नजर आ रहीं हैं।

बना हुआ भी नजर आ रहा है।